और उसके नीचे गाड़ियां रखी हुई हैं और लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही है व अंधेरा सा दिखाई दे रहा है।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

और एक दिखाई दे रहा है। टेबल के ऊपर रख --

इस इमेज मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है और उसके सामने एक बिल्डिंग है और ग्राउंड में बोहोत सारी कुर्सियां और टेबुल लगी हुई हैं।

इस इमेज में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है। रोड पे रोड पर दो मोटरसाइकिल रखी। एक स्कूटी एक मोटरसाइकिल रखी हुई है। दो --

इस इमेज में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है। रोड पर बहोत सारे --

इस इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही हैउसके ऊपर एक टीन सेट है उस पर लिखा है संजय बुक --

इस इमेज मे मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है। उसके अंदर बोहत सारी परीक्षा अध्ययन रखी हुई दिखाई दे रही हैं और किताबे भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं और अंधेरा लगा हुआ है।

इस इमेज में मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है उसके अंदर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं लाइटिंग लगी हुई है और --

बिजली का तार और खम्मा दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे पुल दिखाई दे रहा है और उसके नीचे रोड दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहे हैं।